तस्वीर में एक कॉलेज दिख रहा है इसका नाम गढ़वा पॉलिटेक्निक कॉलेज है।

स्टील का कुर्सी है एक बेड है सीगी है पानी का जार दिख रहा है।

पुराना घर दिख रहा है जिसमें लोहे का गेट लटकाया गया है नीचे लकड़ी बिछा दिख रहा है।

तस्वीर में सीमेंट का दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम शौर्य ट्रेडर्स है नया नया खुला लग रहा है।

दो कुर्सी है एक बड़ा सा कुर्सी है जिसके ऊपर लाल कलर का चद्दर चद्दर बिछाया गया है।

दो सोफा है जो सफेद कलर का है नीचे टाइल्स लगा दिख रहा है।

पीछे एक अलमारी दिख गोदरेज दिख रहा है गोदरेज के अंदर शीशा दिख रहा है।

दीवार हल्के हले रंग का है नीचे लाल रंग से किया गया है नीचे सीमेंट से प्लास्टर किया गया है।

नदी के दोनो साइड बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

और दो तीन लाइन का पोल दिख रहा है जिससे तार जा रहीं है।

एक ए_सी लगा दिख रहा है एक छोटा सीढ़ी है।

अलमारी के अंदर बहुत सारा सामान का दिख रहा है कुछ मेकअप का समान है।

लोहे का रेलिंग दिख रहा है बाहर से रौशनी आते दिख रही है।

बगल में रूम दिख रहा है जिसके अंदर कुछ फ्लावर लगा दिख रहा है।

बाहर गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एंट्री गेट लिखा है।

भीड़ में हॉस्पिटल दिखाया हैं हॉस्पिटल में बहुत सारे आदमी दिख रहा हैं कुछ डॉक्टर खड़े दिख रहे है।

तस्वीर में टेंपू स्टैंड दिख रहा है स्टैंड के अंदर बहोत सारा टेंपू दिख रहा है।

में स्कूल का स्टेज दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ बच्चे खड़े हैं दो आदमी खड़े हैं जो योगा जो प्रार्थना कर रहे हैं।

बगल में स्कूल का बिल्डिंग दिख रहा है जो लाल कलर से है आधा बिल्डिंग सफेद कलर का भी है।

नीचे एक चप्पल दिख रहा है बहुत सारी कुर्सी दिख रहा है।

बाहर बहुत सारे बाइक दिख रहे है एक जीप खड़ी दिख रही है।

दिख रहा है सीमेंट सीमेंट का रेलिंग वा दिख रहा है।

तस्वीर में गांव का गली दिख रहा है गली के अंदर एक बड़ा सा ट्रैक्टर दिख रहा है ट्रैक्टर के ऊपर चार डी_जे बना नजर आ रहा है ऊपर माइक बना दिख रहा है।

डेस्क दिख रहा है डिब्बे में बहुत सारे सामान रखे दिख रहे है।

खाली हॉल दिख रहा है एक अलमारी दिख रहा है जो शीशे का है जिसके अंदर बहुत सारे खिलोने रखे दिख रहे हैं।

बगल में लकड़ी से डिजाइन बनाया गया है जो काले कलर से पेंट किया गया है।